पिक्चर में बोर्ड लगा नजर आ रहा है बोर्ड पर सैनिक--

इस पिक्चर में बहोत सारे पंखे चलते हुए नजर आ रहे हैं।

रंग बिरंगे झंडी लगे नजर आ रही है आस पास गमलों में फूल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

पुल के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है आसपास--

छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं सुखी और मिट्टी का मैदान नजर आ रहा है।

पिक्चर में बहोत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं।

खा हुआ नजर आ रहा है बहोत सारी टाइल क्लीनर्स की बोतलें रखी नजर आ रही है लाइटें जलती नजर आ रही--

पिक्चर में बहोत बड़ा हरा भरा पार्क नजर आ रहा है।

ये पिक्चर एक रेस्टोरेंट का नजर आ रहा है।

बहोत सारे स्टेच्यूज बने हुए नजर आ रहे है।